यह एक दुकान है जो कि दुकान में हर तरह का सामान मिलता है जैसे कि बिस्किट ।

यह एक कपड़ा का गोदाम है जिसमे की बहुत--